इस दुकान में दुकानदार बैठा हुआ है यहाँ पर बहोत से ग्राहक यह किताब कॉपी के लेने के लिए आए हुए हैं।

यह घर के बाहर एक चार चक्के की गाड़ी है।

साइकल चला कर किया जाता है सभी आदमी यही पर जिम करते हुए दिखाई दे रहा हैं।

यह ग्राउंड यह सड़क किनारे बहुत बड़ी बिल्डिंग है यह बिल्डिंग में --

यह मेला में बहुत तरह-तरह के झूलने की सामान लगी गई है ।